प्यारा दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और बहुत ही जबरजस्त छत पर टंकी-वगेरा उँ टी_वी का टिन छत्ता वगेरा सबकुछ लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे गणेश भगवान के मूर्ति हैं देख सकते हैं और यहाँ पे लाइट वगेरा सब कुछ लगा हुआ हैं और बहुत ही--